अंदर फंसा हुआ है जो की बहुत अच्छा नजर आ रहा है यह एक --

की बस नजर आ रही है पास में ही श्री राधे राधे पवित्र भोजनालय है जहां का --

प्रदर्शित कर रहा है कि यह एक्सेस करके कैसा लग रहा है यहां पर सभी प्रकार के मशीनस रखे हुए हैं।

द्रव्यवती नदी के पास मे स्थित है पास मे अग्नि शामक यंत्र भी रखे हुए है।

मेन के लोवर जिसकी साइज एम टू लेके फोर एक्स_एल --